बाइक भी खड़ी हुई है और यहां पे आप देख सकते हो हरे रंग की पेड़ पौधे लगे हुए हैं आप देख भी सकते हैं यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है।

पीछे ब बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहां पे लाइट की प्रबंध किया गया है।

जय भारत जय भीम जय बौद्ध बौद्ध ओम लिखा हुआ है यहां पे।

बहोत सी मालाएं लगी दिख रही हैं मालाएं सारे फूलों की है।

देखने में बहोत अच्छी है ये आप देख सकते हो यहां पे बहोत सुंदर माडा है।

ये तस्वीर है यहां पे शेरावाली मां की--

पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां पे अह--

ये देख सकते हैं यहां पे एक गाड़ी है और यहां पे कट्टे रखे हुए हैं और यहां पे --

बहोत अच्छा लग रहा है और यहा पे ये--

और यहां पे चश्मे बेचने से और ब्लैक कलर का--

यहां पे देख सकते हो आप बहोत अच्छे लग रहे--

यहां पे देख सकते हो आप यहां पे लाइट गुब्बारे दिख रहे हैं और यहां पे आसमान भी दिख रहा है।

और यहां पे हरे हरे पेड़ पौधे लगे हुए है।

यहां देख सकते है यहां राजकीय मत्स्य बीज फॉर्मर लिखा हुआ है।

यहां मछलियों का बीज बनाया जाता है और यहां पे आप दे सकते हो--

बेबी घर लिखा हुआ --